ये बहोत बड़ी नद नदी टाइप की बनी हैं जहाँ पे पाँच से छै बोड़े रखी हैं | एक बॉड में एक जेंट्स बैठे हैं डंडा पकड़ कर खड़े मतलब बैठे हुए हैं।

फूल है यहां के गेट पे रेड येलो रेड ग्रीन और व्हाइट कलर का बना ग्रेट है इसका और पुरा व्हाइट कलर का बना हुआ है ।

बहुत बड़ी नदी बनी है इसके आस-पास पत्थर की वो बाउंड्री लगी हुई है और आधे में नदी बनी है आधे में पेड़-पौधे हैं इस साइड भी उस साइड भी और सामने भी।